उसमे आप देख रहे हो सामने स्टेट सामने जो है उस अ स्टेचू के एक रोड है जिसमे रेड कलर का नीचे आपको दिख रहा हो गा ऊपर मशीन है जो की काफी नाईस। है |

काफी अच्छी पिक है इस पिक मे कतनी भी चेयर्स हैउनका जो कलर हैवो रेड है आइ थिंक ये शायद ये कोई--

मुझे करने के लिए हो सकता है जिसमें आप देख ब्लू कलर का एक चेयर है जिसमें डॉक्टर बैठता होगा या फिर सामने एक चेयर है जिसमें पेशेंट बैठता --

एक -- एक वैन दिखाई दे रही है ये काफी ऊंचाई पे लग रहा है ये फोटो पीछे ग्रीन कलर की एक हिल दिखाई दे रही है पहाड़ी टाइप की--

मॉल की पिक है जिसमे के आप देख रहे हो की एक पीछे से एक जो है कपड़े लगाए गए है खरीदने के लिए बहार जो है एक हेड डेस्क रखी है।

आ-रोड बनी हुई है इसमें येल्लो कलर की दिखी इसमें एक बॉर्डर दिया गया है जिसमे और ये एक ट्रांसफार्मर रखने के लिए एक ऊपर बनाया गया है।

चेक कर सकते हो की जो वाटर है वाटर काफी क्लीन है क्लीन होने की वजह से इसमें आपको दिखाई दे रहा है।

ये क्लेयरली एक कोई गांव की फोटो है जिसमें है काफी जो है जानवर जिसमें बाहर है घर के बाहर ही आपको --

एक मैदान है मैदान में अब देख रहे हो एक हिल स्टेशन बना हुआ है हिल स्टेशन के चारों तरफ ही देखिए ग्रीन कलर का गास है।

और ऊपर छत के ऊपर से इसमें देखिए आप लाइन क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन देने के लिए इसमें देखिए जो है जॉइंट बनाए गए हैं जो की इलेक्ट्रिक जो है वायर के लिए--